यह पिक्चर किसी फर्नीचर की दुकान की है।

सामने रैक पर कुछ अन्य सामान भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक व्हाइट कलर की कार दिख रही है जो कि उसके पास एक और भी कार --

एक पार्क दिख रहे हैं और उस पार्क में एक पत्थर का लोटस भी है।

यह पिक्चर एक मंदिर की है मंदिर सफेद व ऑरेंज रंग की है।

इस पिक्चर में किसी घर के गेट दिखाई दे रही है।